दो पोले दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बड़े-बड़े लाइटऐ दिखाई दे रही है जो बहुत उजाला कर रही है तथा निचे ग्राउंड में कुछ आदमी दिखाई दे रहे है जो कुछ खेलने का प्रयास कर रहे है|